बहुत ज्यादा बोर्ड रखे हुए हैं और यहां पे एक बहुत बड़ी टेबल है नीले कलर के और यहां पे एक गेट लगा हुआ है और --

दहाड़ रेया है और यहां पे बहोत कुछ है और यहां पे बहोत बड़े पेड़ पौधे लगाए हुए हैं।

और यहां बड़े बड़े शीशे लगाए हुए है एक सफेद कलर की मेज के ऊपर केक रख रखा--

यहां एक बहुत बड़ा महल है और वह महल के बाहर बड़ी बड़ी लाइट लगी हुई है।

यहां पे अलग अलग कलर की लाइट जला रखी है और यहां पे बड़ी बड़ी टेबल भी है।

बहुत सुंदर सुंदर फूल भी लगा रखे हैं सुंदर सुंदर फूल भी हैं।

और यहां पे एक पेड़ भी बहोत बड़ा खड़ा हुआ है और यहां पे लाल कलर का एक फूल है।

यहां पे एक बहुत बड़ा पहाड़ था और यहां पे एक बड़ी मशीन लगा रखी है यहां पे पहाड़ को घटाया जा रहा है।

बहोत ज्यादा बड़ी बड़ी मशीन भी है और यहां पे एक बाइक भी जा रही है।

और यहाँ पे एक असमान भीं दिख रया हैं।

ये एक बहुत बड़ी शॉप है और यहां पे शैंपू अच्छे अच्छे मिलते है यहां पे अलग अलग ब्रैंड के शैंपू मिलते है और यहां पे--

यहां बहोत बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं यहां पे एक एल_सी_डी भी लगा रखी है।

और यहां पे बहोत ज्यादा पानी भरा है एक कुत्ता पानी में--

और यहां पे बहोत सुंदर सुंदर फूल लगा रखे हैं।

यह एक बहोत बड़ा गांव है और यहां पर एक बस भी खड़ी है स्कूल की एक सफेद कलर की गाड़ी खड़ी हुई है।

पोधै लगाए हुए है और यहां पे एक लोगो का--

ये एक बहुत बड़ी दुकान है और यहां पे शीशे लगे हुए हैं बड़े बड़े और यहां पे बहुत बड़ी बड़ी--

और यहां पर पानी कूद रहा है और यहां पर बहोत बड़ी बड़ी झूला भी लगाई हुई है बच्चों की नहाने के लिए भी और टहलने के लिए भी।

और यहां पे बहोत बड़ी बड़ी मशीन काम कर रही है यहां पे--